बड़ा ही सूरज से होता दिखाई दे रहा है यहां पर और बड़ी कम मात्रा में यहां भीड़ भी है और लोग--